अउ घर है घर है के मंदिर है के नारियल का पेड़ है के इंद्राधनुष है के--

अउ आदमी मन नी दिखत है मंदिर है के कि घर है के ट्रॉफी मने है बढ़िया बढ़िया सजावट करीन है बईठे खास कुर्सी सब कुछ दईन है।

अऊर काका बढ़िया बढ़िया इंसान मन है छुआमन खेल खेलत है छुआमन है खेलत है कितना बढ़िया लाल लाल गुलाबी फुल मन --

बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा मन हैं छोटे बढ़िया बढ़िया हैं मै तो घिनते नियार लगत हैं कुन कुन तो आथे जाथे पैसा--